यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे है एक बच्चे के हाथ मे सायकल भी है।

सामने एक टेबल है। उस टेबल पर एक पेन रखा है और एक कैंची रखी हुई है आजूबाजु मे बहुत सारी सामान रखा हुआ है।

एक औरत भी जा रही है। बाजू में कूछ बिल्डिंग्स है। एक लाडका सायकल ले कर आ रहा है। आजुबाजू में बहुत सारे पेडपोधे भी है।

यह एक किताबों दूकान है इस किताबों दुकान पर एक टूल रखा है टेबल है और--

यह एक बगीचा है इस बगीचे में बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पेड़ फूलों के भी है।

एक आदमी है वह लोगों कों समझा रहा है ऐसा एक ऐसा एक मूर्ति का चित्र है।